इसमें एक पियानो भी है।

और एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

वॉल का ऊपर मे टेबल फैन है।

और पीछे में फोटोस है।

जीसके बाल में बहोत सारे--

इस गारी भी जा रहा है।

पीछे में पहार भी है।

और कुछ लोग भी है।

एक इंसान चलके जा रहा है।

इस फोतो में एक ऑफिस नजर आ रहा है।

दुकान का अंदर आदमी बैत रहा है।

और लाइट पोस्ट भी नजर आ रहा है।

फ्रिज का दु फ्रिज भी है।

इसमें एक घड़ी का दुकान है।

इसमें एक पोस्टर में ट्वेंटी किलोमीटर दिखाया हुआ है।